यह मशीन है यह मशीन बहुत सारे सूता काटे जाते हैं ।

नदी है यह नदी में बहुत सारा पानी है यह पानी बहुत गहरी है।

यहाँ पर बहुत सारे आदमी है यह चबूतरे पर कपड़े फीचतें है एवं नहाने के लिए भी बैठते हैं इससे इसके चारों ओर से पेड़-पौधे भी हैं।

यहाँ पर टीसन पढ़ा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे मम बत बहोत से छोटी-बड़ी बच्चियां अपने-अपने कोपी कलम से यहाँ पर पढ़ रही है।

यह घर है। यह घर बहुत बड़ी है। यह घर काफी पुरानी है। यह घर की सारे कलर उड़ चुकी है। यह घर यह घर में बोहोत से अ बोहोत से सारे आदमी भी यहाँ पे रहते हैं।

यह प्लेटफार्म में बहोत सारे पटरियां हैं यह पटरी पर एक ट्रेन चल रही है यह ट्रेन काफी बड़ी है यह ट्रेन कोयले से चलती है।

कट्टी-कट्टी कागज रखी हुई है यहाँ पर दो तरह के अंगूर रखे गए हैं एक काले अंगूर है एक हरे कलर के अंगूर है यहाँ पर एवं केला है संतरा है यहाँ पर सेब भी रखे गए हैं यह फल --